आप देख सकते हैं ये जो चित्र है इसके अन्दर फ़तेह ट्रैक्टर अबोहर जो है वो नज़र आ रहा है।

यहां पर आप देख सकते हैं का‌ है जो होर्डिंग लगा हुआ है स्टेट गेम्स नेशनल गेम्स जो नेशनल लेवल कोच --

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो है एक पेट्रोल टैंक का जो है वो शीन दर्शा रहा है ये चित्र कुछ लोग खड़े हैं कुछ--

कुछ है जो नज़र नही आ रहा है पर एक घर के बहार वो खड़ा है और अच्छा सा घर है।

बाल भी उस खड़े हैं और तैयार होके सेल्फी ले रहा है।

जहाँ पर ये एक हॉस्पिटल है और वहां पे खाली बेड जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं साफ़ सुथरा हॉस्पिटल पड़ा हुआ है बिल्कुल क्लीन साफ़।

बोहोत सारे फादर्स जो है वो बेठे हुए है और पीछे जीजस क्रिस का भी फोटो लगा हुआ है।

एक लकड़ी का भी खो खो नज़र आ रहा है कुछ पलन टाइप का उसमे एलक तकिया भी रखा है।

बहोत ही सुंदर से फूल उसमें लगए गए हैं गुलाब के पिंक कलर के जो है वो और जो है सजावट कर सामग्री भी लगइ गई है।

इस चित्र में आप देख सकते है की ये जो है वो चित्र अ एक पूरी पानी--

का नज़ारा है पहाड़ भी है पथर पड़े है बिच में--

और ये जा रहा है इसके पईये जो है एक उपर नज़र आ रहा है बाकी सब सही लगे हुए है।

बहुत ही आकर्षित करने वाली ये बाइक खड़ी है सुन्दर सी लग रही है नई बाइक है और बिल्कुल शो रूम के बाहर खड़ी है।

इस चित्र में आप देख सकते है की बहोत सारे गमले लगे हुए है।

यहाँ पर मछलिया रखी हुई है और बेचीं जा रही है।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे एक्टिवाएँ खड़ी हैं अ जो है व्हाईट कलर की ब्लू कलर की।

वो जो ऊपर की तरफ है और वो एक पार्क के अन्दर बनाया गया है कुछ लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं ये एक पार्क है।

इस चित्र में आप देख सकते है कि ये ब्लू कलर और डबल कलर मिक्स कलर ऐसे कर के बहोत सारे डब्बे रखे गए है।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं प्लांट लगाए हैं बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं काले काले कलर --

के अंदर भी लगाए गए ब्लैक कलर के कुछ जो एक दो तीन चार गमले भी रखे हुए नजर आ रहे है।

जो एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक फाउंटेन बना हुआ नजर आ रहा हैं बहोत सारे लोग इस नजारे को देखने आए है।

इस चित्र में आप देख सकते है की मज़ीद बनी हुई है यहाँ--

बहोत सारे खूबसूरत सी चीज़े बनी हुई है जो लोग देख रहे है अंदर जा रहे है इसके अंदर--

इस चित्र में आप देख सकते है की घर नज़र आरहा है।

दो तीन जो पर दिख रहे है उनके शटर उठे हुए है।

और यहाँ से कुछ लोग गुजर रहे है एक अंकल भी यहाँ से गुजर रहे है कुछ गाड़िया भी इसके सामने खड़ी हुई है।

सीसर रखी हुई है जो है टेबल्स रखी हुई है कोलेब रखे हुए है सबके सामने बोहोत सारे--

इस चित्र में आप देख सकते है की यह गार्डन है।

उम्म यहां पर जो है वो बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं ये नर्सरी होगी।

इस चित्र में आप देख सकते है की दो जो बड़े बड़े--

और यहाँ पर जो है बहत सारी माल लगाया गया है लोग हे--

काफी टायरस लगे हुए है रेड अंड ब्लैक बलून रखे हुए है लोग भी यहाँ पर बेठे हुए है।

इस चित्र में हम देख सकते है की एक पेड़ लगा हुआ है बुको सारी बड़ी बड़ी मशीनस दिखाई दे रही है।